और डांस करते हुए कुछ लोगों को देख सकते है।

बहुत सारे लोग इस मंदिर में पूजा करते दिखाई दे--

और भी अलग अलग चीजे रखी हुई दिखाई दे--

देख सकते हैं यहां अलग अ--